पहाड़ी इलाका है और यहाँ छोटे - छोटे पौधे लगे है लोग यहाँ लुप्त उठाते है भरपूर आंनद उठाते है और यहाँ पानी बहती हुई --

और ये हमारा जगदलपुर का बेस्ट होटल है यहाँ छोटे रहे के बड़े रहे सभी यहाँ पहुँचते हैं नेता मंत्री और अपने जगदल--

गल्फ़ा सागर शांदार अच्छा बना हुआ है शाम को सूरज ढलता हुआ छोटा सा तालाब भी है तालाब के नीचे एक--

ये बहुत अच्छा कपड़ा दुकान है यहाँ एक से एक बच्चे लोग का वेराइटी का कपड़ा मिलता छोटे से लेकर बड़े तक का बच्चे लोग का कपड़ा अच्छा-अच्छा मिलता है और सुंदर-सुंदर कपड़ा मिलता है।

यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते जाते है और यहाँ कपड़े की भी सुविधा है।